और एक लोहे का जाल लगा है।

वहां कुछ लेडिज खड़ी हैं।

जिनमें बहुत सारे जंगले लगे है।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है।

और फिटिंग के अंदर और भी बहुत सारा सामान रखा है।

एक ब्लैक कलर के कुर्सी रखी है।

और यहां बहुत सारा समान टंगा हुआ है।

जिसमें बहोत सारी मशीने रखी है।

ये एक मिठाई की दुकान है।

इसमें एक शीशे का काउंटर रखा है।

उसके ऊपर एक गद्दा पड़ा है।

ये एक बहोत बड़ी लेहर है।

इसके बाहर एक लोहे का गेट लगा है।